इस दृश्य में बहोत ही बड़ा सा ग्राउंड भी दिख रहा है जो कि बाउंड्री से घिरा हुआ है।

इस दृश्य में दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में ईंटे भी दिख रहे हैं।

यहां पे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे मिर्ची दिखाई दे रही है जो कि हरे रंग की है।

इस दृश्य पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में बहोत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जो की अलग अलग कलर के है।

कुर्सी भी रखे हुए हैं और टेबल भी है और टेबल के ऊपर लैपटॉप भी रखा हुआ है।

उस बिल्डिंग में बहोत सारे बालकोनी भी दिख रहे हैं उसमें गमले रखे हुए हैं।

इस दृश्य में घड़ी भी दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक लड़की भी दिखाई दे रही है।

हॉस्पिटल के रिसेप्शन में बहुत सारे बलूंस भी लगे हुए हैं जो कि अलग-अलग कलर के है।

इस दृश्य में प्ले जोन दिखाई दे रहा है जहां पर कार लगे हुए हैं खेलने के लिए।

उस ग्राउंड में बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग से शेप के है।

उस रूम के दीवार में कुछ लिखा हुआ भी है।